चार लोग काम कर रहे--

देखा जा रहा है।

पी का पेट्रोल पंप --

यहां पर कार की सर्विस कर रहे --

बहुत बड़ा स्कूल है यहां पर रूबी जुबली है।